मॉनिटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके आगे कुछ लोग भीड़ लगा कर खड़े हैं।

सीलिंग पर सफेद एवं नीले रंग की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

ट्रेन की बोगी और ट्रेन का इंजन खड़ा दिखाई दे रहा है।

सब जगह हरी हरी घास उगी हुई है।

सामने की ओर शिवलिंग स्थापित दिखाई दे रहे है।

ऊपर में एक बड़ा सा ओम बना हुआ है।

तस्वीर में एक चकोर आकार का घेरा किया गया है।

एवं इसमें काले रंग के कई सारे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं।

भातखंड संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पर कलरफुल लेटर में विज्ञान बुक सेंटर स्टेशनरी होलसेल बुक सेलर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए नजर आ रहे हैं।

एवं हरी हरी घास भी दी हुई है।

बहुत सारे बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए दिख रहे हैं।

शक्स टेबल कुर्सी और एक बड़ा सा छाता लगाकर बैठा हुआ है।

तस्वीर में सामने की ओर कई सारी गाय खूंटे से बंधी हुई दिखाई दे रही है।

इस पर एक सफेद कलर के अक्षर से यूनियन बैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इसपे कई सारे लोग बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बाइक सवार आगे की ओर जाता हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में सामने की ओर एक काले रंग की तोप रखी हुई दिखाई दे रही--

पीछे के ओर कई सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

बोर्ड्स लगे हुए हैं जिस पर सूचना लिखी हुई दिखाई दे रही है।

सफेद कलर का झूमर लटका हुआ दिखाई दे रहा हैं।

सारे बड़े आकार के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक शख्स ने अपने हाथों में हेलमेट पकड़ र--

एक लाल कलर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है।

गेट मे सामने की ओर एक दुकान बनी हुई दिखाई दे रही है।

बगल में काउंटर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इसपर गोल्डी टेस्ट ऑफ लव लिखा हुआ है।

और सफेद कलर की टी शर्ट पहने खड़ा दिखाई दे रहा है।

इनमे सामने की ओर एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

से घर पर लाल रंग से कलर किया गया है।

तेलुगू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।